ऊपर छत में कुछ झूमर टंगे हुए हैं कुछ लाइटें लगाई गई है और पर्दे भी टंग रहे हैं।

नीचे धरती पर टाइल लगाई गई है और सामने ग्रीन कलर के पर्दे भी टांगे हुए है।

लेडीजो ने ग्रीन कलर की टी शर्ट और व्हाइट कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है।

दिया गए चित्र एक दुकान का है जिसमें खेल खिलौने मिलते हैं।

दुकान के अंदर एक चेयर भी रखी है और काउंटर पे सामान सजा कर रखा भी है।

सामने रोड़ी पड़ा हुआ है सामने फावला भी दिखाई दे रहा है जो नीचे गिरा हुआ है।

पीछे जाली से बाउंड्री की गई है पीछे की साइड कुछ वनस्पति भी दिखाई दे रही है।

जिसमें सामने घोड़े की बहोत बड़ी पेंटिंग बनी हुई है।

यह चित्र एक रोड का है जिस पर बहोत सारे साधन दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक रोड से लिया गया है इसमें एक जाली दार लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक युवक और एक महिला भी दिखाई दे रही है साइड में कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई है जिन पर व्हाइट कलर के मैट पीछे है।

यह चित्र एक मकान का है जिस पर वाइट कलर हो रहा है।